यह एक गर्ग एग्रो काइंड कंपनी है यहां पर सभी प्रकार के यंत्र उपलब्ध है।

यहां पे बादलों का कलर रेड ब्लू है यहां पानी का कलर ब्लैक लग रहा है यहां पर एक झड़ी लगी हुई है।

जो येलो कलर के हैं रेड कलर के हैं ग्रीन कलर के यहां बैटरा रखे हुए --

एक कॉलेज जैसा लग रहा है जहां पर बच्चे अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर एक बच्चा फाइल लिए बैठा है।

यहां पर पेड़ पौधे हैं यहां अंदर लकड़ी रखी है एक बोरी पड़ी हुई है।

पन्नी बछी हुई है यहां पर एक स्लीपर रखे हुए हैं।